उसके हाथ में कैरी बैग है और आजू-बाजू बहुत बड़े-बड़े टेबल अ अ झाड़ भी हैं।

ये एक घर बनाया जा रहा हैं यहाँ पे आलू ब्लैक का ये घर तैयार हो जा रहा हैं ऊपर बहोत सारे आलू ब्लैक हैं टंकी हैं सलाखें वॉल उठाए गए हुए हैं।

यह एक बड़ा सा वर्कशॉप है यहाँ पे टी_ वी_ भी रखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे।

यहाँ पे बहुत सारे आदमियाँ बैठे हुए हैं किताब ले के और यहाँ पर फरारे लगाए गए हैं कैमरे हैं स्याना है।

और यहां पे बहोत सारे फुगे भी लगाए गए हैं नेशनल फ्राई के कलर के कलर के रे है ऑरेंज ग्रीन वाइट और यहां पे पीछे पर्दा भी मारा गया है।

और यहां पे बहोत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और नीचे ऊपर फैन है ए_सी है पी_ओ_पी भी किया गया है सा--

बहुत सारे जिम्स है यहां पे डिजिटल जिओ लाइफ है यहां पे बड़े से ग्लास में से दिख रहा है।

और गाड़ीयां भी पावड़े औ बहुत सारे लोग भी है और साइकिल भी पावड़खी की गई है ये ये बड़ी सी बिल्डिंग है।

और ऊपर आसमान दिख रहा हैं आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ हैं बड़ा सा यहाँ टी_सी का खंबा भीं लगा हुवा हैं इसमें टी_सी भीं लगी हुई हैं यहां--

यहाँ पे आदमियाँ भी कटिंग करने वाले हैं यहाँ पे फेस वाश भी रखा गया है यहाँ पे कप भी रखा हुआ है।

और अंदर बहुत सारे कलर कलर के लाइटा चालू हैं पर्दे मारे गए हैं फरारे से सजाए गए--

अ बहुत सारे चमचे हैं यहाँ पे लिख जाने के लिए बुटियाँ भी हैं और नीचे टाइल भी बिछाए गए हैं व्हाईट कलर के यहाँ पे बहुत सारे कैमरे हैं फैन --

और यहाँ पे बहुत सारा जिम का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे रनिंग मशीन जॉगिंग मशीन भी है और डंबल्स भी हैं यहाँ पे।

बड़े-बड़े स्ट्रेट पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ पे बाजू जाली भी मारी गई है।

और ऊपर आसमान भी दिख रहा है ब्लू कलर दिख रहा है।

चश्मा है पाकिट है पानी का जग है और यहां पे टोपी रखा हुआ है यहां पे।

और इनका सबका सामान पड़ा हुआ है लगेज अपने-अपने साथ है यहाँ पे सजदा कर रहे हैं और ऊपर हरा कलर का पेड़ भी दिख रहा है।

और यहां पे बोहोत सारे मिठाइयां मिलते हैं और यहां पे बाग बार--

यहां भी एक आदमी खड़ा हुआ है बाहर यो टेबल है काले कलर की एक कुर्सी भी है और यहां पे नीचे हरी हरी घास --